यहाँ बहोत ही सुन्दर मौसम दिखाई दे रहा है। और यहाँ बहोत ही सुन्दर तरीके से आसमान दिख रहा है और नीचे बहोत ही सुन्दर तरीके से दुकान भी दिख रही है।

यह बहोत सुंदर कपड़े जरकिन की दुकान है। यहाँ जरकिन भी बहोत सुंदर-सुंदर रखी हुई हैं। गर्ल्स जरकिन बहोत सुंदर कपड़े भी बहोत सुंदर दिख रहे हैं। कपड़े शॉप्स की दुकान है।